ग्राउंड दिखने में ई इतने सुन्दर है क्या बताए बहुत अच्छा ग्राउंड है उसके अन्दर एक बहुत अच्छा सा झरना लगाए हुआ है बहुत अच्छा बहुत अच्छा इसमें घास पुल वुल भी लगा हुआ है।

यू.पी. की गाड़ी है। इस गाड़ी देखने में बहुत सुन्दर है। यह गाड़ी बैठने में सीट वुड सब बहुत अच्छा है। कलर भी बहुत अच्छा है। इस गाड़ी का पिकअप बहुत ज्यादा है। ये डीजल इंजन है। बहुत अच्छा गाड़ी है ये।